और इसके दरवाजे कांच के है और सफेद बॉर्डर है।

कुछ दूर दूर में पानी वगैरा भी दिख रहा है।

और यहां पर कारपेट बिछा हुआ है रेड कलर का--

और वहां दूर बिरियानी सेंटर के पीछे--

ये एक कार की शोरुम है जहां कि बहोत सारी कारे यहां--

एक आदमी स्कूटर पे जा रहा है और बहोत सारे लोग नीचे खड़े हुए हैं।

काफी अच्छी दिख रही है इसके मूंछ वगैरह भी बड़े बड़े है और चिकना सी बदन है।

ये एक रोड है रोड के बगल से--

बॉर्डर किया गया है अगल बगल में जीसस और मदर मैरी की फोटो भी है।

ये एक डांस क्लब की फोटो है यहां--

ये एक दुकान में बहोत सारे शो आइटम रखे हुए है।